इमेज एक मॉल की दिखाई दे रही है जो अ जिसमे बहुत सारे कपडे दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में शिवाजी महाराज की मूर्ति दिखाई दे रही है जि जिस उनके पेर के नीचे--

शेर का एक स्टॅचू हैं पीछे ढेर सारी मूर्तिया दिखाई दे रही हैं।

पूतले के लोग दिखाई दे रहे है।

इमेज में एक क्रिकेट के कीट की शॉप दिखाई दे रही है जिसमे क्रिकेट बॅग है और बहुत सारे ढेर सा--

इमेज मे शिवाजी महाराज का पुतला दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान है पीछे साइड मे ढेर सारे पेड़ पौधे लगे है।

इमेज में ढेर सारी बिल्डिंगस दिखाई दे रहे है जिसका कलर व्हाइट है और सामने की और में--

इस इमेज में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। नीचे --

एक ऑरेंज कलर की बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

इमेज में एक कोचिंग इंस्टिट्यूट का दिखाई दे रहा है जिसमें एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है दीवार पे औ--